एक बूढ़ा आदमी जो कि टकला है। कॉफी भी पी रहा है। कॉफी के ऊपर --

यहाँ पर एक ब्लू कलर का टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक पानी का एक बोतल रखा हुआ है।